यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसमे से एक गाड़ी का कलर येल्लो कलर का हैं ये स्कूटी हैं।

बाइक का कलर ब्लैक एंड रेड में है उसके बगल में एक और बाइक है जो ब्लू कलर का है सामने में एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिख हुआ है --

जो वाइट कलर का हैं और ब्लैक कलर का हैं ऊपर में जो छत हैं उसका कलर रेड हैं।

यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसमे से कुछ लोगो ने पीले कलर के कपड़े पहने हुए हैं एक औरत हैं जिसने पीली कलर का सूट पहना हुआ हैं।